और पानी के भीतर ही कुछ वृक्ष लगे हुए है कुछ वृक्ष सूख गए है कुछ हरे-हरे लगे दिखाई दे रहे है और कुछ नीचे डला हुआ है नारंगी जैसा कुछ अच्छा कलर दिखाई दे रहा --

यह एक फूल वाली दुकान है यहाँ पर गमले मिलते है यहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ रखी हुई है यहाँ पर बहुत सारे गमले लगे हुए है जिसमे--

और वहाँ पर कुछ नारियल के वृक्ष लगे हुए दिखाई दे रहे हैं लाइन से और वहाँ पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं और सामने एक--

विबा है उसके बाजू मे एक मकान मिट चुका है वह उसके सामने एक खोली बनी हुई है यहाँ पर पानी एक भरने वाला नल भी --